यह एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है देखने से पता चल रहा है कि किसी देवता का यह दृश्य है।

पेड़ पौधे भी काफी सारे यहां प दिखाई दे रहा है।